इनमें मुझे एक पार्क दिखाई दे रहा है। पार्क में लाइटिंग दिखाई दे रही हैं और ब्रांचए दिखाई दे रही हैं।

इस इमेज में मुझे एक घर दिखाई दे रहा है। घर के ऊपर तीन गेट दिखायीं दे रहे हैं नहीं तीन खिड़की और बड़ी-बड़ी और दिखाई दे रहे हैं निचे लिखा हुआ है उस पे मोटर्स --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

इस इमेज में मुझे एक फलों की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें बहोत सारे फल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।